और ट्रांसफरन के आगे बहुत सारे पेड़ है अलग-अलग प्रकार के।

ये आप सामने देख रहे है एक किराने की दुकान है। किराने की दुकान के अंदर सीढ़ी लगे हुए है।

जिसमें की कुछ खानों में अगरबत्ती रखी हुई है।

और एक ने चश्मा पहना हुआ है। एक ने काले कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है। एक ने हरे कलर की टी-शर्ट --

ओत्स उस के निचे छतरी लगी हुई है टी.वी. की और सामने बोर्ड लगा हुआ है।

और इसमें सफ़ेद कलर का कुछ लिक्विड जैसा लिए है |

सामने आप देख रहे हैं एक आदमी है ए ओ उसके पीछे बोहोत सारे पेड़-पौधे हैं।

सूट पहना है। एक ने रंग बिरंगी साड़ी पहनी है और कुछ ने लेहंगे पेहेने हुए है।

सामने देख रहे है ये एक बेकरी एंड स्वीट्स की दुकान है।

प्लस पे टंगे हुए हैं |